और हाथ में ग्लव्स भी पहना हुआ है काम चल रहा है ऊपर--

जिसका नंबर है बि_आर ए_एल --

यह एक वाटर पार्क है।